यार ऊपर से ये बाल्टी भरती है पहले भरने के बाद में अपने आप पलट जाती है।

क्या हुआ भाई? ये स्कूल है।

ये टीचर खड़े हैं जोकि ये बच्चों का प्रैक्टिकल है।

अच्छा भी लेते हैं उसके साथ में --

और यहां पे एक फूल गुलाब का भी रखा है रेड कलर का जो कि इनमें अलग ही दिख रहा है काफी सुंदर है वो भी।

अपने शरीर को फिट रखने के लिए --

और फिर ये गैनर वगैरह भी यूज करते हैं खाते हैं।

और इस पादक में देखो रपटनी कितनी अच्छी-अच्छी हैं।

अरे यार रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है ।

और यहां काफी अच्छे-अच्छे वो हैं और यहां पिक्चर विक्चर वगैरह सब रखती है।

और यहाँ काफी साफ़ सफाई है। दिख रहा है आपको।

देखो ये बुक सेलर है और यहां से हम अपने पढ़ने के लिए बुक खरीदते हैं।

और ये स्कूल में बैठ कर काम कर रहे हैं।

चलो यार कुछ ले लेते है। घी का डिब्बा पूछते हैं इनसे कितने का है।